दो आदमियों को खड़े हुए हम यहां देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक सुपर मार्केट का दृश्य है यहां पर बच्चों के खाने पीने के समान से लेकर घर के--

केस में भी कुछ सोने का सामना रखा हुआ दिख रहा हैं।

यहां हमें एक साफ सुथरी सड़क दिख रही है।

यह हम देख सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है।

खड़े हुए दिख रहे हैं दुकान के बाहर एक लाल रंग का स्टूल पड़ा हुआ है और एक बड़ा सा पोस्टर लगा है।

और वह इनको हातोडोसे तोड़ते हुवे नजर आ रहे हैं।

यह हम देख सकते हैं कि यह बस स्टैंड है यह हिमाचल का बस स्टैंड लग रहा है क्योंकि यहां हिमाचल की दो बसें खड़ी हुई हैं।

एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ दिख रहा है।

यहाँ हम देख सकते हैं कि यह तेजा बुक स्टॉल है।

लेडिस के सूट हम यहां देख सकते हैं एक तरफ जेंट्स की पैंटे लगी हुई है जो अनस्टिच्ड है।

और इन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से लाइन में लगाया गया है।

मखियां वगैराह हम यहां देख सकते हैं।

से पत्थरों के साथ बॉन्डिंग की गई है और पानी आता हुआ दिख रहा है।

एक पेड़ हम देख सकते हैं जिस कार्ड का तालाब की तरफ है।

सुखा सा घास हमें यहां नज़र आ रहा है।

दो शीशे यहां लगे हुए हैं जो बड़े आकार के दिख रहे हैं और बिजली का बोर्ड लगा हुआ है।

इस रोड पर एक ट्रक जाते हुए देख सकते हैं और--